यह विद्यार्थीयों का सहायता केंद्र है यहाँ पर किसी भी तरीके का विद्यार्थी को दिक्कत होती है तो ये लोग यहाँ आकर अपनी समस्या का समाधान का उपाय पूछते है समाधान निकाला जाता है।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

वन नाइन वन फोर है |

यह एक माँ दुर्गा का पंडाल है यहाँ पे सात मूर्तियां है एक सिर है और एक व्यक्ति जो है वह इसका तस्वीर ले रहा है काफी सुन्दर सजावट है।